कोने में कई सारे पानी की टैप्स भी दिखाई दे रहे है।

दीवार पर पोस्टर भी लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दो ई रिक्शा दिखाई दे रहा है।

कोने में एक स्पीकर भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ और जीजस की स्टैचू भी दिखाई दे रहा।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

चर्च के पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

चर्च की खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड पर बहोत सारे लड़के भी दिखाई दे रहा है।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

सामने में एक वेलकम बोर्ड भी लगा हुआ है।

सड़क पर एक बस और कई सारे मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है।

आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधा भी दिख रहा है।

सड़क पर एक काली कुत्ता लेटी हुई है।

आस पास पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक नाला भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर छोटी छोटी तीन खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

कई सारे मशीन भी दिखाई दे रहे हैं।

बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग पर डिस्को लाइट भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।

गुलाबी रंग का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

कवर्ड पर तीन मोटी डिक्शनरी भी दिखाई दे रही है।

सामने में कार्टून के डिब्बे भी दिखाई दे रहा है।

सामने में काली मां का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

लाल कलर की टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहा है।

कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहा है।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

बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

और मोटरसाइकिल भी दिख रहा है।

कोने में एक बड़ा सा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर पंखा भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक रूम का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड पर कई सारे लड़के खेल रहे हैं।

दो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के ऊपर वाटर बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

चम्मच और टिशू पेपर भी दिख रहा है।

बिल्डिंग पर पंखा और ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक फल का दुकान दिखाई दे रहा है।